सब्जियाँ एक मोल का लग रहा है जहाँ पर हमें शल्फ पे बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुयी दिखाई दे रही है देखने में यह सारी सब्जियाँ ताजा तो नहीं लग रही है।

ये एक केक शॉप का है जहाँ पर हमें केक रखे हुए दिखाई दे रहें हैं देखने में ये केक बड़े ही स्वादिष्ट लग रहें हैं।

हमे यहाँ पर बहुत सारे ग्राहक भी दिखाई दे रहे हैवही हम अंदर में दो दुकानदार को बैठे देख पा रहे है।

इस तस्वीर में हमें बिल्डिंग देखने को मिल रहे हैं ये बिल्डिंग देखने में काफी लंबे लंबे है और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्हें डिजाइन किया गया है।

हमें इस तस्वीर में हमें बहुत सारे घर और बिल्डिंग दिखाई दे रहे है देखने में यह दृश्य काफी अच्छा लग रहा हैं यहाँ पर हम पेड़ पौधे भी देख पा रहे हैं ।